पर हमें दिवार दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें पत्ते दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें काफी ज्यादा पत्ते दिखाउ दे रहे हैं जमीन के उपर हमें--

खुला आसमान यह पर दिखाई दे रहा है बिजली के तार जाते दिखाई दे रहे है बिजली के खंबे दिखाई दे रहे है नीचे हमें हरी भारी घास और मिट्टीया दिखाई दे रही है यहा पर हमें गेट लगा दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का का रंग हमें लाल कलर का दिखाई दे रहा है यहा पर उसके काच दिखाई दे रहे है। यहाँ पर हमें --

तस्वीर मे हम देख सकते है यहा पर हमे ये काफी पुराना किला दिखाई दे रहा है उसका हमें बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है यहा पर हमे--

तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जो कि छोटे-छोटे पास-पास में दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें--

बोर्ड दिखाई दे रहा जिसके ऊपर मतदार दिखाई दे रहा यहाँ पर कुछ स्कूटी दिखाई दे रही बाइक दिखाई दे रही है झाड पौधे दिखाई दे रहे बिल्डिंग काफी पुरानी दिखाई दे रही है इसका चैनल गेट दिखाई दे रहा ब्लू रंग का ताला दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हम देख सखते है यहा पर हमे खुला मैदान दिखाई दे रहा है जिसके उपर हमे हरि भरी घास दिखाई दे रही है यहा पे हमे पीले रंग का पाइप दिखाई दे रहा है यहा पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहा पर हमे--

कुछ कार्टून के बॉक्सेस दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ लोग खडे दिखाई दे रहे है यहाँ पर महिला पुरुष यहाँ पर अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहा बॅनर लगा--

यहा पर हमे कुछ पाइप दिखाई दे रहे है यहा पर हमे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है यहा पर हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा यहा पर हमे बैठन के बेंच भी दिखाई दे रहे यहा पर हमे पानी की बोटल पड़ी दिखाई दे रही है नीचे जो की ख़राब है।

पर्फ्यूम दिखाई दे रहा है शैम्पू दिखाई दे रहा है फ़ेश्यल क्रीम दिखाई दे रही है यहा पे तेल दिखाई दे रहा है बोतल दिखाई दे रही है।

यहाँ पर शटर दिखाई दे रहा है ताला दिखाई दे रहा।

हम देख सखते है यहा पर हमे सीढ़िया हाथ लगी दिखाई दे रही है यहा पर हमे सीढ़िया के उपर हमे यहा पे एक किला दिखाई दे रहा है जो की काफी पुराना किला दिखाई दे रहा है।